इस तस्वीर में एक होटल का रिसेप्शन दिख रहा है।

गेट के आस पास बहोत सारे हरे झाड़ है।

और सुबह सारे हरे पेड़ दिख रहे हैं।

भारत पर मैला रंग दिया गया है।

पानी में हमें चार लोग दिख रहे हैं।

इसके पीछे बहोत सारे हरे पेड़ नज़र आ रहे हैं।

यहां पर बोर्ड पर इंक सैनिटी लिखा हुआ है।